व्हाइट कलर का पेंट है और इसमें लाइट लगा हुआ है और ट्रक भी अपना तेल ले रहा है। दूसरे तरफ जो है एक कार ले रहा है अच्छा खासा सा।

कटर भी है लड़का इधर देख रहा बाहर की तरफ।

कार एजेंसी है नगर विकाश एवं आवास विभाग बिहार सरकार का बोर्ड लगा हुआ है और यह बिल्डिंग जो है पीला कलर का पेंट किया हुआ है दीवाल पे ----

दुकान है जिसमें कोल्ड-ड्रिंक ही कोल्ड-ड्रिंक दिख रहा हमको।